मोटरसाइकिल भी रखी है बैनर भी लगे हुए है लाइट भी है ।

इलाज होता है इस मे टेबल भी है कुर्सियाँ भी है लाइट भी लगी हुई है।

पेड़ भी लगे हुए है पौधा भी लगे हुए है भी है यहाँ पर ।

मशीन भी है लाइट भी हैं।

इसमें थ्रेशर भी है थ्रेशर भी है ट्रैक्टर भी है।